अ अ अ यहाँ पे बसें खड़ी हुई हैं। बस स्टैंड है।

रोड बनी हुई है उसका रंग काला है और आदमी घूम रहे हैंजिनके कपड़ों का रंग लाल है काला है और पत्तियों का रंग हरा है और काला है।

और लाइट लगी हुई है जिसका रंग सफ़ेद है और आदमी बैठा हुआ है।

पानी का टेम्पो रखा हुआ है उसका रंग लाल है और यहाँ पे दुकान में ये आदमी बैठे हुए हैं और कुछ लोग सामान ले रहे हैं हाँ जिनके कपड़ो का रंग सफ़ेद है कला है। अ --

यहाँ पे बसे खड़ी हुई हैं बोहोत सारी और बस स्टैंड है। बस का कलर लाल है पीला है।

सारे बच्चे है।

रंग सफ़ेद है ऊपर बैनर लगा है जिसका रंग नीला है और गड़ियां यहां पे खड़ी हैं जिनका रंग नीला है काला है और बच्चे खड़े हुये हैं।

आ यहां पर ये बस स्टैंड है और ये दो आदमी आ रहे है एक बड़ी लंबी कतार लगी हुई है लाइन लगी --

बस खड़ी हुई है जो की और बस का कलर तो लाल है।

और तंबू बना हू है। इसका ल बगल बगल घर बने हुए हैं लोग छत के ऊपर चढ़ के देख रहे हैं |